एंड उसने एक प्रिंटेड शर्ट भी पहनी हुई है।

ये बंडल रखे हुए हैं अलग-अलग कलर से प्रिंट की गई --

आस-पास और कुछ छोटी-छोटी दूकाने तो कुछ बड़ी-बड़ी दुकाने भी लगी हुई नजर आ रही हैं।

यहाँ पर एक स्वीस्ट शॉप दिखाई दे रही है जिसमें अलग-अलग --